यह एक शादी समारोह का दृश्य है।

तथा महिला का टॉप का छोटा सा टॉप पहनी हुई है और सॉक्स भी पहनी हुई है जो की ब्लू एवं व्हाइट कलर का है।

जहां पर एक पोस्टर लगाया गया है पोस्टर पे लिखा हुआ है।

तरह तरह के लाइट लगे हुए हैं और झूले में बहोत सारे दरी भी बिछाया गया है।

यहां पर टीन छत जैसा कुछ बनाया गया है और उसमें रेलिंग भी लगाया गया--

बेंच में पेंट भी किया गया है और बेंच का बेंच को लोहे की मदद से बनाया गया--

पे बहोत सारे घर में पोस्टर भी लगाया गया है।